इस फ़ो फोटो में आपको एक किसी के घर का फोटो दिखाई दे रहा है उस घर के में मेंन गेट भी लगा हुआ है।

इस फोटो में आपको एक मार्केट का फोटो दिख रहा है जो कि सब्जी फ्रूट्स मार्केट है औ उस मार्केट में एक ठेले पर बोहोत सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं।

इस फोटो में आपको गैरेज का फोटो दिख रहा है। जिस गैरेज में बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

इस फोटो में आपको एक वाटर फाउंटेन दिखाई दे रहा है। नाइट का समय है और इस वाटर फाउंटेन में बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है।

जो ये फोटो खिंचवा रहा है।

बहुत ही अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है।

इसमें स्टैचू बना हुआ है। इसकी वॉल दीवार पर बहुत अच्छी पेंटिंग की गई है।

इस फोटो में आपको किसी के घर का फोटो दिखाई दे रहा है। इस घर में विंडो बनी हुई है।

अअ कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है।

जिसमें बहुत ही स्टैंडर्ड की फोटो लगी हुई है। मिरर लगा हुआ है। पोस्टर्स लगे हुए हैं।

और उसमें आइलैंड भी नजर आ रहा है और यहाँ पर --